मछली है तार है बाल्टी है प्लास्टिक बाल्टी बर्तन है चप्पल है ट्रे है स्टूल है।

मिठाइयां है लड्डू है रसगुल्ले हैं ।

तार है पोल है पेड़-पौधे है लोग है।

रोड है घास है पेड़ पौधे हैं पोल है।

पार्क है लाइट है बिजली के खंभे है तार है टावर है ।